यहां पर हर तरह का फ्रूट आचार जाम और और भी बहोत सारी चीज मिलती है।

यहां पे तीन रोज हैं और बुक्स बहोत अच्छे से--

बेड बना हुआ है और टेबल पे एक केटल रखी है कुर्सी पे एक टाल रखा है।

ऐसा लग रहा है जैसे मैकेनिक आराम कर रहा है।

यहां पर सोफे रखे हैं बहोत सारे।

ऐसे लग रहा है जैसे विन का सीजन है और एक व्हाइट --

ये शिमला का बहोत फेमस पंचायत भवन है।

सूरज शायद ढल रहा है और पेड़ बहोत अच्छे लग रहे हैं।

जैसे ही ये किसी वेडिंग के लिए गया है या फिर इनके घर पे कोई वेडिंग फंक्शन है इन्होंने ये फोटो --

अं इस फोटो में शिमला का हिस्टोरिकल इंडियन कॉफी हाउस दिख रहा--

इस फोटो में बच्चे दिख रहे हैं स्कूल के और--

वो शायद मोटिवेट कर रहे हैं अच्छा करने--

ऐसा लग रहा है जैसा किसी ने--

किसी रास्ते में चलते फ़िरते ली है --

और उसपे आसपास वोटिंग भी लगे हैं।

जहां वो खड़ा है वहां पे मिट्टी बहोत ही रेड जैसे कलर की है।

बिल्डिंग का गेट बंद है बाईकें खड़ी है।

ये फोटो किसी ने शायद किसी ढाबे पे या रेस्टोरेंट मे ली है।

विंटेज जैसी फीलिंग दे रही है पुराने टाइप जैसे की--

लाइट्स भी बोहोत ब्राइट है जिम में।